यहाँ कुछ तीन से चार लोग काम काम रहे है जोकि छत डलवाने का काम है और ऊपर एक नीला आसमान है।

यहाँ पे काफी सारे दूध और दूध से सम्बंधित खाने पीने का सामान भी मिलता है।

और आस पास काफी ज्यादा गमले भी लगाये रख --

यहाँ आस पास काफी ज्यादा पेड़ पोधे लगे हुए हैं और एक स्टीम इंजन भी खड़ा हुआ है। आसपास लोग होने के कारण यह सिर्फ खड़ा हुआ है।

और कुछ लोग फोटो खिचवा रही हैं। एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है एक लाल कलर का सुंदर सा कारपेट बिछा हुआ है।

ये तस्वीर देखने में इतनी प्यारी लग रही है की मई क्या बताऊ। यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन चल रहे हैं। जिनमे कलर मिक्स कर दिया गया है।

यहाँ पर बहुत ज्यादा फाउंटेन लगे हुए हैं दूर दूर तक फाउंटेन ही फाउंटेन दिख रहे हैं हरे नीले पीले लाल गुलाबी सभी कलर के दिख रहे हैं अब तो और बहोत सारे लोग भी हो चुके हैं।

पांच पर्दे लगे हुए हैं और कुछ पीछे भी पर्दे लगे हुए हैं जो पीले और लाल रंग के हैं। यहाँ दो अच्छी सी लाइट्स लगी हुई हैं।